जिसका एक पैया बाहर निकला हुआ है और नीचे गिरा हुआ है।

और उसके नीचे बोर्ड लगाए हाउ टू यूज दिस सर्विस किस तरीके से--

वहां पे पोस्ट ऑफिस डार्क घर का एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि लाल कलर का है।

जैसा कि आप देख रहे हैं दो लड़के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जो मोबाइल --

जैसे की बिल्डिंग में बहुत ही बहुत ही तरीके की विंडो दिखाई दे रही है ककी दिखाई दे रही है जो कांच की बनी हुई है।

वी शेप में चार पांच वी शेप बने हुए हैं बहुत ही काले कलर का वो लड़का है।

सैंडविच रखा है जो कि पनीर में रैप करा हुआ है।

एक लाल कलर की टी-शर्ट में भैया खड़े हैं एक मानी की बोतल --

और यहां पर ए_सी लगी हुई है एक दरवाजा दिखाई दे रहा है और इस साइड एक और अलग से चेयर लगी हुई है बहुत--

वहां पे ओम नमः शिवाय और हनुमान जी का फोटो लगा है दो लड़कों का फोटो दिखाई दे रहा है।

इस बस के अंदर एक ड्राइवर बैठा है बस ड्राइवर बैठे हुए हैं।